जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम ए वन एम जे बी --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक हरा-हरा पेड़ दिखाई दे रहा है यह पेड़ बहुत ऊँचा --

चौकोर डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पर पंखे लगे हुए है जिनका रंग सुनहरा है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है मंदिर का रंग लाल व सफ़ेद है।

क्रीम कलर का है दिवार पर एक घड़ी है जिसका रंग काला है यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है जिसका रंग नीला --

सफ़ेद रंग से वीवो लिखा है।

दिवार का रंग सफ़ेद है तथा फर्श का रंग भूरा --

तथा बड़ी मछलियो का रंग स्लेटी है जमीन का रंग भूरा है।

यहाँ पर यहाँ पर चीले है जिनका रंग काला है जमीं पर एक रबड़ पड़ी है जिनका रंग काला है।

तथा दूसरी कार खड़ी है जिसका रंग सफ़ेद है यह एक केंद्रीय ग्रंथालय है।

हरी-हरी घास दिख रही है।

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे है जिसपर कुछ हरी घाँस लगी हुई है।

तथा जमीन का रंग ग्रे --

पेड़ कुछ सुन्दर दिख रहे है पेड़ो का रंग हरा तथा यहाँ पर--

नांव पर कुछ लोग सवार है जो काले दिख रहे है।

कुछ बाइक खड़ी है जिनका रंग काला है।